उसके बाजू में एक मैन्यू रखा हुआ है।

इसमें तीन टेबल लगे हुए हैं।

इस मस्जिद में तीन शेफ लगे हुए हैं नमाजियों के लिए।

बाजू की तरफ कुछ कुकीज के पैकेट भी रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे वाहन लगे हुए हैं।

सामने में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुर्सी में पिंक शट पहन कर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

गेट के सामने एक रैक रखा हुआ है।

उन्हीं के पीछे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है उनका डांसिंग सर --

इस टेबल पूल एक कमरे में मौजूद है।

इसके नीचे बांस के सीढ़ी बनी हुई है।

एक बच्चा स्टेज पर चढ़ा हुआ है।

यह दृश्य एक एंट्रेंस को दर्शा रहा है।

एक इमारत पर फिटनेस पॉइंट का पोस्टर भी लगा हुआ है।

इसी के बाजू में कुछ लकड़ी भी गिरी हुए हैं।

यहां पे बास्केटबॉल खेलने के लिए बनाया गया है।